एक हाथी के ऊपर एक लड़का डंडा लिए हुए खड़ा है।

कुछ पुरुष भी खड़े हुए नजर आ रहे--

यहां पर कुछ बोर्ड में लिखा गया है।

लाइटिंग इसका पीला नीला में है।

आमने दो मोटर बाइक रखी हुई है।

भिंडी का मिर्ची का और एक प्याज भी नजर आ रहा है।

कुछ कच्चे टमाटर है और कुछ लाल टमाटर है।

एक टेबल चेयर है जिसमें बहुत अच्छे से कपड़े लगाए गए हैं।

पीछे कुछ घर नजर आ रहे हैं और यहां पे कुछ श्रद्धालु हैं।

इधर सामने में एक व्यक्ति है जिन्होंने एक बच्चे को गोदी में उठाया है।

यहाँ पे बहोत सारी जिम के लिए लोहे का सामान सब है।

लाइटिंग लगी हुई है यहां पे ग्रिल लगा है सब लोहे का ही है।

ये एक पीले रंग का घर बना हुआ है।

ऊपर सजावट की गई है लाल नीली हल्के नीले हरी कलर की।

नीले कलर का पहना है।

ढेर सारे बच्चे नजर आ रहे हैं जो प्रार्थना करते हुए--

उजाला है दिन का समय हो रहा है।

सामने एक पुरुष नजर आ रहा है अपने मोटरसाइकिल में बैठा हुआ दीवाल तरफ देख रहा है।

सामने ही लोहे की ग्रिल खुली हुई नजर आ रही है।

पेड़ हैं बड़े बड़े और घास है।